मार्केट दिख रहा है। इसमे बहोत सारे फूलों की दुकाने दिख रही हैं। टेबल दिख रहा है जो लकड़ी का दिख रहा है। उस के साइड एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है। उस के नीचे बोरा पड़ा दिख रहा है।

क्यूँकि हाथों मे छेनी हथोड़ा दिख रहा है जिस से वो छत को छिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ बलिया छत को टीका के रखी दिख रही हैं । लोगों ने सर पे पीले कलर की टोपी और ऑरेंज कलर का जैकिट पहन कर रखा हुआ है। साइड में दीवार दिख रही है। जिस पे प्लास्टर करा हुआ दिख रहा है।

एक साइकिल की दुकान का फोटो दिख रहा है जिसमे बहोत सारी साइकिल दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति दिख रहा है जिसने मास्क पहना हुआ है। उसके हाथ में एक साइकिल दिखाई दे रही है। वो साइकिल पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है जिसके हाथ में एक काले कलर का बेग दिखाई दे रहा है।

महिला चेयर पे बैठी हुई दिख रही है। पीछे एक दीवार दिख रही है जिसमे फूल की डिजाइन बनी हुई है। एक सफेद व्हाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है। सभी बच्चियो ने सर पर कुछ पहन कर रखा हुआ दिख रहा जो व्हाइट कलर के फूलों का बना हुआ दिख रहा है। सभी ने साड़ी पहन के रखी हुई दिख रही है ।

एक लकड़ी का टेबल रखा दिख रहा है जिस पे पीले कलर का कलर पोता हुआ दिख रहा है। उस के ऊपर एक व्यक्ति साइड में बैठे हुआ है। उस के पीछे दो व्यक्ति और बैठे हैं जिसके पास में फूल रखे हुए हैं। एक थैली टंगी हुई दिख रही है दीवार पर। पीछे ऑरेंज कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं। और बेग रखे हुए दिख रहे हैं।

ये मछली मार्केट के दुकान की शॉप दिख रही है। इस के अंदर बहोत सारी मछलियाँ पड़ी दिख रही हैं । साइड में कुछ केकड़े पड़े दिख रहे हैं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

और एक दीवाल पे स्टिकर चिपका हुआ दिख रहा है। एक पर्दा दिख रहा है जो ब्लैक और वाइट कलर का दिख रहा है और निचे शूज पहने हुए दिख रहे है ए_सी दिख रहा है जो वाइट कलर का दिख रहा है

अंदर भी दीवार दिख रही है और छत दिख रही है और ऊपर पंखे लगे दिख रहे है साइड में कुछ डब्बे रखे हैं कचरे के दिख रहे है जिसमे काले कलर की पन्नियां दिख रही है और लाल कलर के डब्बे दिख रहे है।